बहोत से लोग यहां दिखाई दे रहे हैं।

रैक पर भी हमें बहुत से बॉक्स नजर आ रहे हैं।

सामने हमें पटरियां नजर आ रहीं हैं।

प्रतीकक्षारथी के लिए चेयर नजर आ रहे हैं।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

यहां पर हम सामने एक बड़े से हॉल को देख रहे हैं।

सामने लोहे की तीन अलमारी नजर आ रही हैं साथ ही एक दरवाजा--

हमें कुछ बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

बहोत ही बड़ा सोफा और कुछ कुलर लगे हुए नजर आ रहे हैं फूलों से बहोत ही सुंदर सजावट किया गया है।

उसका रंग सफेद और नीला है हमें कुछ बिजली के खंभे दिख रहे हैं।

साथ ही हमें कुछ बड़े खिड़कियां दिखाई दे रही हैं।

जमीन पर दरी बिछी हुई है।

भगवान के तस्वीरें साथ ही हमें कुछ फूलो के तस्वीर--

सामने एक बड़ासा लाइट जलते हुवे दिख रहा है।

चेयर लगे हुए हैं जिन पर हमें कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

साथ ही हमें एक खिड़की भी यहां पर--

सामने एक स्टेज बना हुआ है।